ब्रिज के ऊपर एक डब्बे जैसा कुछ काला नजर आ रहा है सामने भी कु--

थैली है पेड़ पौधे लगे हुए दिख रहे हैं पीछे--

यह एक कम्पनी के बाहर ग्राउंड दिख रहा है जहां पर--

एक इंजीनियर दूसरे वर्कर्स को कुछ बता रहा है।

यह एक कॉलेज जैसा लग रहा है। जहां पर कुछ लोग--

यहं एक कंप्यूटर ऑनलाइन या बैंकिंग जैसा कुछ दिख रहा हैं बैंक का अंदर--

और ऊपर ए_सी लगी हुई है लाइट दिख रहा है ले लाल कलर की चेयर कंप्यूटर दिख रहे हैं एक लेडिस कंप्यूटर चला रही--

चला रहा है पीछे भी डेस्क पर कंप्यूटर रखे हुए हैं पेड़ लगा हुआ हैं दोनों साइड में।

लाइट जली हुई दिखाई दे रही है। अंधेरा दिख रहा है।

यहां पर ऐसा गोदाम जैसा लग रहा है जहां पर बॉक्स रखे हुए कई प्रकार के--

और उस अंदर भी कुछ मशीनें हैं जैसे कि अपन डी_जे में मशीन बजाते हैं वो साउंडर मशीन --

यह एक होटल दिख रही है जहां पर--

ऊपर छोटी-छोटी लाइटिंग लगी हुई है। दिवालों को कारपेट से सजाया गया है फोटो क्रेप से।

यह एक होटल जैसा लग रहा है या फिर पिक्चर्स रेस्टोरेंट है ये।

और एक बच्चों जिस बच्चों के लिए ट्रेन टॉयज का सर्कल्स बनाया हुआ है हे बहार उसके बीच में बम गमला रखा हुआ है।

यह एक सात्विक एंटरप्राइजेज जहां पर सामान मिलता है घर की उसका--

आर_ओ जैसी मशीन्स जैसा दिखाई दे रहा है।

बाहर साइड में भी़ कुछ लिखा हैं इधर पोस्टर्स लगा हुआ--

और पीले कलर का पर्दा भी लगा हुआ है नीचे फूल गिरे हुए--

उनको बांध के रखा है रबड़ या रस्सी से--

यहां पेट्रोल पंप की फोटो दिख रही है जो रात के समय की है।

इधर भी है फायर ब्रिगेड मशीन द दिख रही है।

यह ऐसा लग रहा है कि जैसे कि का सामान को पैक करा हुआ है रूम खाली करते अपन तब टेबल के ऊपर स बुक रखे हुए हैं।

साइड में भी रोल नंबर या कुछ नोटिस लिखा हुआ दिख रहा है पेपर का ऊपर भी खिड़की में भी कुछ पेपर का लिखा हुआ है।